इस चित्र में दिखाया गया एक पार्क की फोटो ली गयी है जिसमें डस्टबिन पड़ा है नीले रंग का जो कचरा डालने के लिए काम आता है इधर एक कुर्सी पड़ी है बैठने के लिए।

स्टॉल है जिसका नाम है तेजा बुक स्टॉल इसमें एक महिला है जो पुस्तकें बेंच रही है।

और इसमें बहुत सारा स्कूल का तै सामान पड़ा है एक इधर कैलकुलेटर पड़ा है जो हिसाब जोड़ने के लिए काफी पुस्तके पड़ी है लेजर वगेरा सब भी जो सामान आता है काम में--